लाल संतरा और पीले रंग का है | आस पास थोड़ी बहुत झाड़ियाँ भी है।

साथ में फोटो फ्रेम भी लगा हुआ है बहुत सारी लाइटें भी हैं।

एक साथ एक कतार मे लगा हुआ है कुछ कपड़े मूर्तियों को पहनाए हुए हैं।

और ये सारे कपड़े जेंट्स के और बच्चे के है।

और छत पे बहुत सारी लाइटे हैं | रौड की दिवार है जिस की रोड की दिवारे भी है |

और बाहर मे एक डस्टबीन है जिसमे वो डस्टबिन मे गन्दगी फै डाली गयी है | बगल मे एक लड़का है |

नदी है और आमने सामने बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हैं | आसमान है जो नीला है |

बहुत सारे आदमी आ जा रहे हैं और सबने जैकेट स्वेटर डाल रखी हैं किसी-किसी ने कैप भी लगा रखा है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी छत पे बहोत सारी लोग इकठ्ठा है।

यहाँ एक रेलवे ट्रैक है और ट्रैक के उस साइड प्लेटफार्म दिख रहा है प्लेटफार्म के --

और प्लेटफार्म पर बैठने के लिए वहां पर कुर्सी है जो सीमेंट की बनाई हुई है।

यह एक समुन्दर है और समुन्दर पे एक नाव है और नाव पे दो व्यक्ति है जिन्होंने अपना हाथ --

डॉग को पकड़ा हुआ है | डॉग को इन्होने पट्टों से पकड़ा हुआ है | एक डॉग काले रंग का एक सफेद रंग का है |

यह एक बाजार का दृश्य है जिसमे लोग सरक --

यह एक सफेद रंग की बस है जिसमें हल्का पीले रंग का भी बॉर्डर लगाया है और इस बस मे कर्टेन लगा हुआ है।

विंडो है और दरवाजे है एक मैम है जो बच्चो को --

देख रही हैं बच्चे डेस्क पे बुक है उनको --

यहाँ पे एक छोटी सी नदी है और नदी के उस किनारे पे दो बसे है जो लगी हुई है।

यहाँ पे दो ऑटो रिक्शा है इस ऑटो रिक्शा में से --

एक दरवाजा है दरवाजे के ऊपर आई.सी.यू. लिखा है और ऊपर में इमरजेंसी का बोर्ड हैंगिंग है।

यह एक बेकरी शॉप है जिसमे केक --

अपना माथे पर घड़ा रखा है | इस स्टेचू को एक साथ ही एक एक एक मेज --

जैसा मिट्टी के इमेज के ऊपर बनाया गया है सामने में उ तालाब है अगल-बगल बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

इसके ऊपर में टैक्सी लिखा हुआ है और यह एक रोड पे पार्क किया हुआ है।

और एक ट्रिप एक ट्रैक से ट्रेन जाती हुई दिख रही है सामने वाली ट्रक खाली है।

इस पे बोर्ड भी लगा हुआ है बनारसी पोलिश कला केंद्र जहाँ साड़ियों की --

निचे जो नंबर है वो पिले रंग से है जो प्राइवेट नंबर है |